और इ उम्म्म वॉशिंग मशीन है उम्म्म फ्रीज है ।

में बहुत पुराना घर है और घर में एक आदमी ऐ लुंगी पहन कर अ उ लुंगी पहने हुआ और वाइट कलर का हाफ शर्ट पहन कर कुछ सोच रहा है बहुत --